और सुंदर-सुंदर गमले और कुछ घर में सजाने के छोटे-छोटे पौधे दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें खेल मैदान देख सकते हैं जो की ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसमें एक बड़ी लाइट जल रही है और एक प्लेयर खड़ा हुआ दिख रहा है।

इसमें से एक बॉलिंग कर रहा है और दूसरा बैटिंग के स्थान पर खड़ा हुआ है यह सूखा हुआ खेत है।

ये एक ट्रैन है ट्रैन बगीचे में खड़ी हुई है यहाँ पर ट्रैन के तीन डब्बे और एक इंजन देख सकते है जो की लाल रंग के पीले रंग के है।

हरे-भरे और भी हैं।

यहाँ पर हरा-भरा घास का मैदान दिखाई दे रहा है पानी से भरा हुआ जलासय और उसी के किनारे बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये वायर लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं जो कि अपनी मोटर से कनेक्टेड है।

इसमें सुखी और हरी घास उगी हुई है इसके ऊपर सूर्य की आकृति दिख रही है वह एक खंभा इसके बाजू में खड़ा हुआ --

इस चित्र में हम एक टेंट देख रहे हैं जिसके पास एक एक्टिवा खड़ी हुई है साथ में कुछ लोग टेंट के अंदर है जिसमें --

महिलाओं की तादाद पुरुषों से अधिक दिखाई दे रही हैं यह बहुत अच्छा और सुंदर टेंट दिखाई दे रहा --

यह एक वाटर पार्क का दृश्य है जिसके अंदर एक स्लाइड दिख रही है जो घूमी हुई है।

ऊपर गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी गई है जो की बहुत सुंदर है।